है और यहाँ पे एक टेंट भी लगा हुआ है जो कि हरे कलर का दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहोत सारी ट्रेडमिल मशीन दिखाई दे रही है जिसमें इंसान अपना वेट कम करता है जिसमें खड़े होकर दौड़ना पड़ता है और ये सारी मशीनें नई की नई दिखाई दे रही हैं और तीन-तीन मशीनें यहाँ पे रखी हुई हैं।

यहाँ पर बहोत सारी घास लगी हुई है | कुछ घास जो है हरी है कुछ सुखी हुई सी पिली पिली घास दिखाई दे रही है | यहाँ पे बहोत सारी मिट्टी भी पड़ी हुई है।